नीचे हरा कलर का है ऊपर में लगा हुआ है रंग बिरंगी की साड़ी।

यह एक येलो कलर का अबीर उडा रहा है हम ढेर सारा लड़का है ढेर सारा लड़की है।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है यह पोस्टर बहुत बड़ा है।

यहां पर दो घर है एक घर पीला कलर का है।

यह बहुत साफ जगह है यहां पर बहुत सारा बस है।

यह एक घर है यह घर बहुत बड़ा है।

यहां पर ढेर सारा खिड़की है खिड़की में बहुत सारा रोड हुआ है।

यहां पर तीन टेबल है। यहां पर ढेर सारा कुर्सी है। यहां पर ढेर सारा लोग है।

इसमें बहुत सारा रड लगा हुआ है इसमें पोल लगा हुआ है पोल में तार लगा हुआ है।

यह बुक का दुकान है। यह दुकान बहुत बड़ा है।

यहां पर ढेर सारा लोग हैं यहां पर लाल कलर से लिखा हुआ है।

यहां पर एक चेयर है यहां पर लाइट जला हुआ है यहां पर एक खिड़की है यहां पर एक तार है।

यहाँ गेट लगा हुआ है यहाँ पर दीवाल हुरा घुरा हुआ है।

यहां बहुत सारा लोग है लोगो के हाथ में बहुत सारा गुब्बारा है।

यहां पर बहुत सारा बांस है यहां पर ढेर सारा पू फूल है यहां पर बहुत सारा जंगल है।

यहां पर एक पुतला है पुतला का हाथ पीला है।

यह यहां बहुत सारा पेड़ है यहां पर एक लाइट लगा हुआ है यहां पर एक तार लगा हुआ है यहां पर बहुत सारा साफ जगह है।

यहां पर एक शटर लगा हुआ है यहां पर एक लोग खड़ा है।

नीचे में बहुत सारा बाल साफ जगह है पत्थर रखा हुआ है।